यह एक मंदिर है जो की ब्लैक एंड वाइट कर दिया गया है और एक सरोज्जा दिख रहा है।

यह एक हॉल है हॉल में डेकोरेशन किया गया है घुम्माड़े से और सब से।

और बहोत सारे पर्दे दिख रहे है पोस्टर दिख रहे है एक आदमी खड़ा है जो की माला पान्याँ।

और उ पहाड़ दिखरा है पहाड़ का कलर आकाश का कलर ब्लैक एंड वाइट कर दिया गया है और कुछ --

पोस्टल लिखा गया है विष्णु पट्टा सी सेवन सेण्ट ।

नीचे लिखा गया है बहूनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमौ रसातले।

क्रिकेटर का पोस्टर है एक आ.बी.ज अब्दुल कलम का पोस्टर है।

और सब लोग चित्र बना रहे हैं कुछ बच्चियां सो रही हैं इसमें दो बच्चियाँ एक आगे ल-लाल कलर की पहनी हुई हैं।

मार्क्स लगाया है मार्क्स उंगली --

ये एक पार्क है पार्क में बोहोत सारे बच्चे-बच्चियां है जो की चित्र बना रहे हैं।

ये तशवीर में चार बस दिख रहा है और ती एक घर है एक घर के सामने चा तीन आदमी दिख रहे हैं।

रेनबो कलर में अकाश दिख रहा है बहोत सारे पेड़ दिख रहे है।

होटल दिख रहा है बिल्डिंग दिख रहा है एक होटल का कल ब्लैक एंड वाइट कर दिया गया है पहाड़ का रंग ब्लैक एंड वाइट कर दिया गया है।